टेबल पर एक पानी का बॉटल और एक डिब्बा रखा हुआ है।

इस मैदान में नीचे में छोटे छोटे घांस लगे हुए हैं और झाड़ियां भी हैं।

यह एक नदी का दृश्य है नदी में कहीं पानी तो कहीं बालू है और नीचे में छोटे छोटे घास भी हैं।

यह एक खुले मैदान का दृश्य है।

यह एक प्लेट का दृश्य है इस प्लेट में चावल सलाद दाल और सब्जी रखे हुए हैं।

इस कमरे में एक मशीन रखा हुआ है।

इस कमरे में नीचे कारपेट बिछा हुआ है।

यह एक कमरे का दृश्य है कमरे की दीवार का कलर व्हाइट है।

इस कमरे में बहोत सारे लड़के जिम कर रहे हैं।

इस कमरे में बहुत सारे कार्टून में कूकर रखा हुआ है।

यह एक बड़े ही बिल्डिंग का दृश्य है बिल्डिंग की दीवार का कलर सिलेटी कलर का है।

आगे में एक मोटरसाइकल भी खड़ी है।

रोड पर बहुत सारे पुरुष चल रहे हैं और बहुत सारी महिला भी चल रही हैं।

इसके सीलिंग में एक सर्कल वाले बल्ब लगी हुई है।

का पाइप भी लगा हुआ है उसमें ट्यूबलाइट लगे हुए हैं।

सभी आर्म अलमारी मे बहोत सारे कार्टून्स और कुछ कुछ वस्तुएं रखी हुई है।

इस कमरे में बहुत सारे कार्टून भी रखे हुए हैं।